ऐसे दिखाई दे रहा होगा जैसे कि कुछ था ही नहीं और आपको इस बारे में क्या कहना है आप मुझे इसमें देख के जरूर बताइए धन्यवाद।

आपको भी यह चीज ऐसे दिखाई दे रहा होगा जैसे कि कुछ था ही नहीं।

और इत्यादि भी यहाँ पे बहोत कुछ--

यहाँ पे काफी प्रकार की वस्तुएं रखी हुई भी मुझे दिखाई दे रही है और इत्यादि यहाँ पे बहोत कुछ मुझे रखी हुई दिखाई दे रही है शायद --